और इधर बैठा हुआ आदमी भी वीडियो बना रहा --

इत्यादि भी है और यहाँ की लाइटे भी अच्छी है।

देखने से ये एक जिम का दृश्य लग रहा है ऊपर में एक पोस्टर चैंपियन ट्रेनेड लूज़र --